बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी नजर आ रहाी हैं बहुत सारी लोगो की भीड़ दिखाई दे रही है यह एक बिग बाज़ार लग रहा है जो बहुत बड़ा है।

सामने बच्चा तस्वीर खिंचवाता दिखाई दे रहा है बहुत ही खूबसूरत बाग़ लग रहा है हरे भरे पेड पौधे दिख रहे है।